और यहां पे आगे एक बिजली का बोर्ड सा लगया हुआ है।

ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की--

यहां पे बहुत सारे बड़े पेड़ लाग रे हैं।

यहां पे एक लड़की दिख रही है लड़की ने--

यहां पे लाइट लाइट लगी हुई है यहां पे पेडे लगे हुए है यहां पे चारो तरफ पेडे ही पेड दिख रहे हैं।

और बहुत अच्छा लग रहा है देखने बहुत अच्छा है।

ये झूला झूल र उनकी झूला झूल रहे हैं यहां पे पारक है इ पार्क में एक बैठे हुए हैं।

इसने एक कैप पहनी हुई है उस पे वो कैप पे बी_ओ_वाई बॉय लिखा हुआ है।

सु अह सुपर बार है यहां पे दारू दूरू मिलती है अगैर वगैरह मिलती हैं यहां ड्रिंक मिलती है।

रखने की मिलती हैं यहां पे यहां पे शीशा भी हो।

यह एक स्कूल बस है यहां पर पीले रंग की बस है और यहां पे एक पानी का भी टैंकर लगा हुआ है।

देखने में अच्छा लग रहा पेड़ पौधे लगे हुए है स चारों तरफ--

यहां पे बहोत सारे गिफ्ट दिख रही हैं।

एक लैंप दिख रेहा है एक पंखा सा दिख रेहा है यह झूमर देख रहे हैं।